एक दुकान का एक शेल्फ दिखाई दे रहा है।

दुकान है जोकि बंद है।

और सीढ़ी वॉल सब कुछ बहोत ही अच्छी तरह से पॉलिश और साफ --

ब्लैक कलर का एक चेयर है जोकी मिरर का रिफलेक्शन में भी दिखाइ दे रहा है।

भी दिखाई दे रहा है।

सबसे कॉर्नर में एक सफेद कलर का कुछ --

हे जिसपे थ्री फोर थ्री नंबर लिखा गया--

ये आदमी मिलके कुछ डिस्कशन कर रहे है और एक वो पीछे में पता नहीं अकेला रह रहा।

उसको देख के लग रहा है कि यह फ्लैग दोनों वाले लग रही है इंडियन दुकान है।

वैदर बहुत सनी है और गर्म दिखता है।

पांच चिड़िया दिखाई दे रहा है।

पीछे एक मूर्ति भी है देवी का।

और आसमान बहुत हरियाली है।

बहोत बड़ा सा जो की मगरमच्छ का है।

कुछ दिखाई दे रहा जिससे पता चल रहा है कि ये बारिश गिर रहा --

कुछ लिखा हुआ है फूड ट्रैक बोर्ड पर।

सामने दीवार मे दिखाई दे रहा है।

एल_इ_डी लागा के रखा है।

इस लेक का इंड में--

माइक सब कुछ है सामने स्पीकर सामने दो बंद पड़ा हुआ मॉनिटर भी दिखाई दे रहा है।

पीछे में बहुत सारा मैट देख योगा मैट जैसा कुछ दिखाई दे रहा है।

काम हो गया शायद दोनों का क्लासेस खतम हो गया है इसीलिए दोनों वापिस जा रहे है।